एक सत एक मैदानमैदान मे हरे कलर की फसले हुई है कुछ लाल कलर के पेड़ हैं जो की फूल के हैं।

एक स्टेज है स्टेज के सामने जो महिलाएँ खड़ी हुई हैं जिन नें रंग बीरंगी --